यहां पंडीशन लगी हुई है इससे ऊपर चढ़ा जाता है ऊपर कुछ डिब्बे रखे हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ सामान दिखाई दे रहे हैं और ऊपर ए_सी लगी हुई दिखाई दे रही है इसके ऊपर दो ए_सी लगी हुई है बाहर एक टी_वी लगी हुई है।

कुछ समान दिखाई दे रहे हैं कुछ प्रोडक्ट है जो महिला के काम आने वाले हैं और समान बहुत ही अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हैं।

ये धोरेक की एरिया है इसमें छोटे छोटे झोंपड़ी जैसे घर बनाए हुए हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं जो गिफ्ट पे करवाने के लिए यहां से लोग आते हैं यहां पर गिफ्ट भी मिलते है बहोत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट भी मिलते हैं।

यहां पर फंक्शन हो रहा है शादी का फंक्शन यहां पर लोग डेकोरेट किए हुए जगह पर बैठे हुए है।

और यहां पर कैमरा में आया हुआ है जो फोटोस क्लिक कर रहे हैं और यहां का एरिया बहोत ही सुंदर सजा हुआ दिखाई दे रहा है।

लेडिस कपड़ा खरीद रही है और दुकानदार इसको दिखा रही है एक लड़की बैठी हुई दिखाई दे रही है।

ये आगे का मैदान है पीछे गर्ल्स है और एक बाइक खड़ी हुई है मैदान बहोत अच्छा है दूब लगी हुई है।

जो बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं टेबल के ऊपर बच्चों के सामान रखे हुए कैंची पेपर ग्लू --

सभी प्रकार के समान रखे हुए हैं सामने मैंम खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे गमला लगा हुआ है

और इसमें एक फोन चार्ज लगा हुआ है और कुछ डिब्बे रखे हुए दिखाई दे रहे है।